इसके ऊपर दो गद्दे पड़े हुए हैं।

उसके दोनों साइड में पार्क है।

यहां पर कितने सारे आदमी इकट्ठा हो रहे हैं।

यहां पर कितने सारे बैग और लेडिस भी है।

और यहां पर लाइट वगैराह लगी हुई है अच्छी अच्छी --

इस पर दो लड़के बैठे हुए हैं।

इसके नीचे गेट लगे हुए हैं।

चेयर वगैरा रखी हुई है।